यहाँ पे बहुत से मुस्लिम जातियों का--

या किसी शादी फंक्शन का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

और साइड में पर्दे भी टंगे हुए हैं।

इसमें कई सारे लोगो भी दिख रहे हैं हमें।

और इस घर के आगे नीले कलर की एक बिल्डिंग भी दिख रही है।

वेदर चेंज का प्रभाव दिख रहा हैसामने।

और कुछ पत्ते हैं जो हमें बहुत सारे नजर आते हुए दिख रहे हैं।

एक ऑरेंज सा कुछ वहाँ पे दिख रहा है जो कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है।

यहाँ पर एक हमें ट्रक दिख रहा है।

जहाँ पर कुछ हरे भरे पेर नजर आ रहे हैं।

बगल में एक स्कूल सा कैंपस है बड़ा सा।

यह एक मंदिर का फोटो दिख रहा है।

जहाँ पर एक पानी से--

एक बड़ा सा वाटर पार्क लग रहा है देखने में ये।

यहां पर दो शख्स बात करते दिख रहे हैं।

साइड में भी काफी अच्छा व्यू नजर आ रहा है।

यहाँ पे थ्री फॉर्टी नाइन का डिस्काउंट भी चल रहा है।

और एक को उसके उसके नाप का जूता दे रहा है।

यहां पूजा रेस्ट हाउस नाम का एक रेंट दिखाई दे रहा है ।

सामने के साइड में कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं।

और ई-टूरिस्ट नाम का एक बोर्ड भी है।

ये एक पार्क का पिक्चर नजर आ रहा है।

और यहां पे पेड़-पौधे भी ढ़ेर हैं सामने में घर भी है।

एक पेर ऐसा भी है जिसमें वाइट और --

यहां एक व्यक्ति लेटा नजर आ रहा है।

यहाँ पर सैमसंग का वाशिंग मशीन --

यहाँ एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है पैर मोड़ के।

जो बाइक में पेट्रोल भरवाते दिख रहे हैं।

पीछे के साइड में कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।

सामने के साइड में एक विक्स इनहेलर का डब्बा भी नजर आ रहा है।

यहां सिख धर्म का लंगर चल रहा है।

यहां पर कुछ व्यक्ति बैठ के खाते हुए नजर आ रहे हैं।

इसके अगल-बगल काफी सारे घर नजर आ रहे हैं।

सामने के साइड में एक शख्स नजर आ रहा है।

और इस दोनों साइड में हमें दो-दो पर्दे देखने को मिल रहे हैं।

मौसम ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

और यह रोड साइड का फोटो है।

एक शख्स के हाथ में उसके कैमरे का रॉड है।

यह एक पार्क नजर आ रहा है जिसमें तीन झूले लगे हैं।

और कुछ औरतें भी यहां पे नजर आ रही हैं।

और यह झरना काफी अच्छा दिख रहा है।

उसके बगल में एक पेड़ भी नजर आ रहा है।

और इसके रिफ्लेक्शन में भी कुछ दिख रहा है पानी में।

यहां एक एस_बी_आई बैंक है।

यह किसी स्कूल का पिक्चर दिख रहा है।

यह एक हॉल है बड़ा सा यहां दो-चार शख्स नजर आ रहे हैं हमें।

ऊपर के साइड में पंखे भी टंगे हुए हैं।

और साइड में कुछ घस घर भी नजर आ रहे हैं।

यह किसी हॉस्पिटल का ओपनिंग का पिक्चर नजर आ रहा है।

और इसके आगे ही एक ट्री भी दिख रहा है।

यहाँ एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।